मुझे यहाँ पर एक स्कूल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

और कुछ लोग बैठे है और कुछ लोग ट्रेन में चढ़ रहे है।

यहां पर हमें एक भवन दिखाई दे रहा है और जिसके आसपास बहुत सारे पेड पौधे दिखाई दे रहे है।

मुझे यहाँ पर बहुत बड़ी नदी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।